एक शादी समारोह है जिसमे दो वैवाहिक जोड़े है एक पंडित है जो पूजा का रस्म आगे बढ़ा रहा है और पीछे कुछ लोग बैठे हुए है। पं--

डाल के किनारे आगे में दो तबेला दिख रहा है पंडित जी सफ़ेद कलर के धोती पहने है वैवाहिक जोड़े भी सफ़ेद कलर के कपड़ों में है।

नीले रंग का स्वेटर पहना हुआ--